पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और और बगल में चेयर के ऊपर एक --

नीचे एक सोफा सेट जैसा रखा है जिसके ऊपर का कपड़ा सफेद और गुलाबी रंग के डिजाइन --

एक बड़ा सा हरे रंग का मैदान है जिसमें लाल रंग के दो-तीन पट्टे बने हैं पीछे बाउंड्री वॉल सफेद रंग की है।

तस्वीर में किसी व्यक्ति का हाथ दिख रहा है उसने एक डंडी के सहारे सफेद रंग के फूल को पकड़ रखा है। सामने की तरफ एक पतला लम्बा रास्ता जाते दिख रहा है।

आस-पास में दिख रहे हैं उझला पड़ रहा है हाथ के ऊपर --

तस्वीर में गुलाबी रंग की बहोत बड़ी इमेज बनी हुई हैं जिस पे सफेद रंग के कपड़े से डिजाइन बनी हैं जो प्लस के आकार में है।

तस्वीर में एक हॉल के अंदर बहुत सारी लाल रंग की चेयर रखी है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सभी सामने की तरफ देख रहे हैं ऊपर छत पर --

तस्वीर में जमीन काले रंग की दिख रही है जिसमें डिजाइन जैसा कुछ बना है हल्के पानी जैसा लग रहा है।

तस्वीर के अंदर जो दुकान है वो चॉकलेटी रंग की पट्टियों से बनी लंबे-लंबे बैनरों से बनी हुई --

तस्वीर दो मंजिला लंबी बिल्डिंग की है नीचे बहुत सारी स्कूटी और मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं कुछ लोग सामने से जाते हुए दिख रहे हैं।

और लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ भी दिख रही है।

तस्वीर में किसी व्यक्ति का सिर की ये तस्वीर है जिसमें बहुत सारी लाल रंग की क्लिप या रिबन जैसा कुछ बंधा है।

सामने हरे रंग के कुछ छोटे पेड़ दिख रहे हैं ऊपर में --

वे नदी के किनारे की है नदी के अंदर एक जहाज जैसा दिख रहा है नदी में सफेद पानी दिख रहा है किनारों पर --

पीछे एक हल्के लाल और सफेद रंग का बड़ा-सा मकान दिख रहा है।

ऊपर लोहे के एंगलों से गोल-गोल डिजाइनें बनी हैं।